जिम है यह जिम काफी बड़ा है यह जिम के नीचे टाइल्स बिठाया हुआ है यह जिम में बहुत सारे बैलून से सजाये गए हैं ।

यहाँ मेनेजर भी रहते है एवं चौकीदार भी रहते है यह स्टेट बैंक में पैसा भी निकासी होती है यहाँ पर पैसे भी रखे जाते हैं यह बैंक में ए.टी.एम. भी है ।

यह एक है यह काफी बड़ा है इस में बोहोत सारे --

यहाँ-हाँ पर एक कूड़ेदान भी है एवं से बाइक भी लगे --